जिसे गुलाबी सफेद रंग से सजाया गया है।

इस चित्र में एक इमारत दिख रही है।

यहां बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं।